एक बिजली का खंभा भी है।

इसमें एक बड़ा कमरे में टेबल कुर्सी रखी हुई दिख रही है।

बगल मे एक छोटा लकड़ी का स्टूल भी रखा हुआ है।

इसमें एक हेवन ऑफ आइसक्रीम नाम का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

उसके ऊपर एक हरे कलर का पर्दा भी लगा हुआ है।

पीछे एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग भी दिख रही है।

और बहोत सारे लोग भी खरीदने के लिए दिख रहे हैं।

इसमें एक फालूदा आइसक्रीम का दुकान दिख रहा है।

इसमें एक पानी का बड़ा कुंडल बना हुआ दिख रहा है।

रेस्टोरेंट में अंदर प्लेटे और काफी सामान दिख रहा है।

दीवार पे एक पर्दा भी दिख रहा है।

फंक्शन में अलग अलग कलर का डिजाइन बना हुआ है।

ए_टी_एम का स्कैनर भी लगा हुआ है।

इसमें एक मॉल के अंदर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

इसमें दो मुर्गे खड़े हुए दिख रहे है।

कुछ कुर्सियां और कपड़े भी रखे हुए दिख रहे हैं।

इसमें एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

इसमें एक हॉल के अंदर का सीन दिखाई दे रहा है।

काफी सारी जिम की मशीनें रखी हुई है।

इसमें एक बच्चा और पीछे आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

छत पे पंखा और ट्यूबलाइट भी लगी हुई --